यहाँ पर एक टेबल है जिस पर नेक्सा कोनसर्टेंट लिखा हुआ है ऊपर एक ऐ_सी है और लाइट्स के बटन --

यहां पे एक बोर्ड है जिसके ऊपर कैमरा रखा हुआ है और ग्रीन कपड़े से बांधा हुआ है।

ल रसी है पीछे डॉग नज़र आरहे है ब्लू वाइट कलर है और टू सी_एन_जी लिखा हुआ है ऐसा--

यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है कैर्री बैग पोस्टर्स काफी सारा सामान है और ग्रीन अ ग्रीन --

सामने काले नज़र आ रहे है और नीला नज़र आ रहा है फिसलगुंडी यल्लो है और उसका खंबा --

यहाँ पर एक बड़ा सा गोदान है जिसमे काफी सारे दरख्त है दरख्तो को पत्ते झड़ गए है है और नीचे काफी सारे पत्ते गिरे--

और गुलदस्ते में ग्रीन पॉड्स हैं येलो हैं।

यहाँ पे एक हॉस्पिटल का रूम है यहाँ पे फिजिओ थेरेपी लिखा हुआ है ।

अम्म नज़र आ रहा है लाइट्स चमक रही है ये घास पूरी हरी नज़र आ रही है।

यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है टॉयज की जिसमे काफी सारी गाड़िया अः और काफी सारे खिलोने अः कुछ वेफर्स रखे हुए है।

बाजू में टॉलिया रखा हुआ है और कुछ पैकेट्स रखे हुए हैं।

और कुछ लोग और ने नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं जहाँ से कुछ लोग उतर रहे है और कुछ चढ़ रहे है।

और बलूंस लगाए हुए स्पीकर है ऊपर टावर है और आने जाने के लिए रस्ता--

और कुछ अम्म एक औरत सर पे पोटली उठायी हुयी है और झाड़ के पीछे बच्चे और कुछ आदमी ठहरे --

और ऊपर नीम का झाड़ है नीचे सीढ़ियाँ है और और रास्ता है और मट्टी भी है।

और सामने एक चूहा का पर टैटू बनाया हुआ है जिसने कचरे का ड डब्बा लेकर ठहरा है।

मी स्कूटी पे जा रहा है जिसने अपने सर पे हेयर हेयरबैंड पहना हुआ है सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग है और दरख़्त हैं।

पानी के फव्वारे हैं जिसमे में भी लाइटिंग आ रही है और कुछ है।

यहां पर दुकान है जिस पे प्रेशर वगैरा मिलते हैं एक भुट्टे हैं काफी सारे पिक --

यहां पर पानी का एक ड्रम है जिसको कनेक्शन जिससे पाइपों को कनेक्ट कनेक्शन किया गया है--

यहाँ पर एक दुकान है जिस पर अर पटे और प्रोफेट्स और काफी सारा सामान है चावल के थैले भी है।

आस पास गा अ गेट है और लाईट्स अ लटकाये हुए है लोग आये हुए हैं।

किड्स और अगरबत्ती के काफी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए है दही के प्रोडक्ट्स ।

और रेड कलर से भी मिरर किया गया है और वह ऑफिस लिखा हुआ है कांच पे--

और कपडे रखे हुए है की सामान रखे हुए है पीछे बुक्स है किताबे है।